इस इमेज में एक सुन्दर लाल शर्मा मुक्ति विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर का ये --

इस इमेज में दो लाल कलर की चेयर रखी है और एक बेड रखा है और यहाँ पे दो तकिये भी दिख रखे है।

ओर यहाँ एक बड़ा बेड भी है और एक दरवाजा भी है।

इस इमेज में लोगन दिख रहे है जिन्होंने नए -नए ड्रेसेस पहनी है और एक आर्मी का व्यक्ति भी दिख रहा है।

और इसमें बेरीगेट भी दिख रहै है जो की ब्लैक कलर का एक मेन गेट है वो स्कूल में जाने के लिए है।

इस इमेज में एक किराने की दूकान दिख रही है जो अभी किराने की दूकान में यहाँ पर आगे काउंटर पर बनया रखी हुई है जिसमे सामान रखा हुआ है।

इस इमेज में एक ब्लैक शर्ट पहने हुए व्यक्ति यहाँ पर कपड़े प्रेस करते हुए नज़र आ रहा है बोर्ड दिख रहा है।

इस इमेज में ये नाईट की इमेज है और यहाँ पे एक गार्डन है गार्डन के आस पास बड़े-बड़े पेड़-पौधे लगाए गए है।

पूरा ग्राउंड दिख रहा है और ग्राउंड में एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है जिसकी भी नज़र आ रही है परछायी भी नज़र आ रही है।

इस इमेज में यहाँ पर बेंच पर सभी बच्चे ड्राइंग बनाते हुए दिख रहे किसी के हाथ में कागज है तो किसी के हाथ में--

और बड़े-बड़े पेड़ साइड में लगाए गए हैं।

गाड़िया भी दिख रही है जो फोर व्हीलर ऑटो टू व्हीलर और यहाँ पे व्यक्ति जाते हुए दिख रहे है जो कार में ऑटो में--

इस इमेज में गीता हरिटेज लिखा हुआ है और उसके बाहर एक कुत्ता आ रहा है गेट पर --

इस इमेज में एक स्टेट बैंक ए.टी.एम है और उस ए. टी. एम में लाइटें जलती हुई दिखाई दे रही हैं।

और एक व्यक्ति उस शॉप पर खड़ा है और यहाँ पर सभी बैनर लगे हुए है जो की किताबों पर बैनर लगाए हुए है एक डस्टबिन भी है।

और वो गेट में बस सेनेटाइज़ करते हुए एक व्यक्ति उसपे सेनेटाइज़ कर रहा है।

और यहाँ पर तीन से चार व्यक्ति दिख रहे है एक फोर व्हीलर गाड़िया दिख रही है।

इस इमेज में यहाँ पर मॉसम्बी और आम दिख रहै है अँगूर भी दख रहै है ग्रे कलर के अंगूर भी है।

और एक व्यक्ति भी दिख रहा है और उसकी प्राइस है सिक्स _नाइन _नाइन लिखी हुई है।

आते हुए दिख रहे हैं एक चद्दर का सेट दिख रहा है तेल के डब्बे दिख रहे--

इस इमेज में एक व्यक्ति है जोकि भारत-माता के झंडे के यहाँ खड़ा हैं।

और यहाँ पे रंग बिरंगे गुब्बरे जैसे सजावट की गयी है और यहाँ पर सभी जगह लाइटे लगी हुई है।

और वो वय्क्ति चड्डी में खड़ा हुआ दिख रहा है।